और दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं और कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक झूला दिखाई दे रहा है।

इस मंदिर के पास मुझे एक डस्टबिन दिखाई दे रहा।

और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में मुझे तीन लड़कियां दिखाई दे रही है।

और कुछ आदमी दिखाई दे रहे है और पीछे एक टी_वी दिखाई दे रहा है।